और काफी सारी है और हम आगे की तरफ से कुछ और बिल्डिंग्स को देख पा रहे है| नीचे की तरफ की बात करे तो नीचे हमे काफी छोटे-छोटे प्लांट्स --

हम कुछ ऊचे ऊचे पेड़ो को भी देख पा रहे हैं और वहाँ पे बने हुए कुछ मकान भी हमे देखने को मिल रहे| ऊपर की तरफ खुला आसमान है उसमे कुछ बादल वगैरा नजर आ रहे और हम काफी दूरी की बात करे तो वहाँ पे हमें कुछ ऊचे ऊचे पर्वत नजर आ रहे हैं।

और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें काफी ऊंची ऊंची जमीन नज़र आ रही है आप देख पा रहे हैं साइड मे अ काफी सारे नज़र आ रहे हैं और --

सिटी है यहाँ पर दो बस खड़ी हुई नज़र आ रही है| सीढ़ियां सी लगी हुई है और देख पा रहे है| उसमे बस मे चार शीशे लगे हुए है।

पिक्चर में हम देख सकते है कि यहाँ पे हमें कुछ बहुत छोटे छोटे पेड़ वगेरा हरे हरे कलर के देखने को मिल रहे हैं जोकि काफी बढ़िया लग रही है प्यारे से लग रहे और हम सामने की तरफ कि बात करें तो वहाँ पे भी कुछ हमें पेड़ वगेरा देखने को मिल रहे हैं।

और हम उसके पीछे की हम बात करे तो हम देख सकते हैं कि एक टाइल्स से बना हुआ एक फर्श जमीन देखने को मिल रही हैं जहाँ पे बहोत सारी टाइल वगैरा बिछी हुई हैं और दो मंजिला मारते --